एक गेट दिखाई दे रहा है। खिड़की दिखाई दे रही है। दीवाल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है तथा एक हमें फोटो दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक बहोत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है। और --

बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दीवाल के ऊपर अर म-म एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक वाइड --

जो येलो कलर में है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारे आ ह बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अरे अ कलर कलर की रेबेन्स टंगी हुई दिखाई दे रही हैं। कोरपेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें बोहोत दो तीन हाथी दिखाई दे रहे हैं। नीचे की ओर ब्लैक एंड वाइट ।--

योर एक बहोत बड़ा पोल दिखाई दे रहा है। वायरलाइन दिखाई दे रही है। ब्लू कलर का बैनर दिखाई दे रहा है।

मे एक तिरंगा दिखाई दे रहा हैं। अंतिर के पीछे और एक पोल दिखाई दे रहा है। आगे की ओर बहोत सारे वायर दिखाई दे रहे हैं।

जलती हुई दिखाई दे रहे है एक छोटा सा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है नीचे की ओर हरयाली और छोटी --

ये हमें एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही हैं। यहाँ आदमी दिखाई दे रहा हैं जोकि आम बेचते हुए दिखाई दे रहा हैं। कुछ आदमी और --

पीछे की ओर चादर दिखाई दे रही है। कारपेट दिखाई दे रहा है। सोफे दिखाई दे रहे हैं। एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पोल लै लैम्प्स दिखाई दे रहे है। आ बसे दिखाई दे रही है। आ कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।